सामने एक बिल्डिंग नजर आ रहा है बिल्डिंग आधा कलर किया गया है बिल्डिंग में काफी सारी खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं।